और हरे-भरे पेड़ नजर आ रहे हैं कुछ पेर मुझे पेड़ मुझे दूर-दूर नजर आ रहे हैं ये हर मौसम काफी साफ नजर आ रहा है।

घर के ऊपर की तरफ मुझे दूध की बनी हुई जाली नजर आ रही है इसलिए सर मुझे बाहर की तरफ एक लाइट भी नजर आ रही है जो कि बंद हो जा रही है गेट भी नजर आ रहा है घर के--

कुछ पेड़ काफी दूर की तरफ बड़े-बड़े नज़र आ रहे है इसी के साथ मौसम काफी साफ नज़र आ रहा है।

मुझे सामने की तरफ कुछ सीढ़ी जर आ रही है जो कि ऊपर की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है।

दो तीन वायर के बने तार नजर आ रहे है इसके साथ मुझे एक टावर भी नजर आ रहा है मौसम काफी साफ नजर आ रहा --

मुझे मौसम काफी साफ नजर आ रहा है हरा भरा मौसम नज़र आ रहा है सामने की तरफ ईंटों से बनी पत्थरों से बनी एक दीवार दिखाई दे रही हैजिसके बीच की तरफ मुझे रास्ता दिखाई दे रहा है।

मुझे सामने की तरफ एक ब्लैक कलर का गेट नजर आ रहा है उसके आसपास मुझे कुछ पिलर्स नजर आ रही है और एक दीवार नजर आ रही है जिसके सामने की तरफ मुझे लाइट जलती हुई नजर आ रही है पीछे की तरफ मुझे एक घर नजर आ रहा है।

सामने की तरफ बहुत सारी बाइक नज़र आ रही है कुछ लोगों भी नजर आ रहे है और एक बड़ा -सा बोर्ड नजर आ रहा है व्हाइट कलर का जिसके ऊपर मुझे कूलर और फैन बने हुए नजर आ रहे --

मुझे कुछ घर नज़र आ रहा हैं और इसी के साथ मुझे सामने उसके उसी-उसी के सामने की तरफ मुझे एक ओप्पो की शॉप नज़र आ रही हैं मोबाइल की और सामने की तरफ एक जाली नज़र आ रही हैं एक बाइक भी नज़र आ रही हैं।

जो सामने की तरफ एक लोहे की बनी हुई बिल्डिंग आ रही है जिसके ऊपर की तरफ से मुझे कुछ स्लाइड नजर आ रही है फिसल पट्टी की --

इसी के साथ मुझे सामने की तरफ एक खाली सा मैदान नज़र आ रहा है और सामने की ऊपर की तरफ का मौसम भी काफी साफ नज़र आ रहा है आइड साइड मुझे कुछ पेड़ नज़र आ रहा है कई पौधे नज़र आ रहे है हरी-हरी घाँस नज़र आ रहे --

सामने की तरफ मुझे एक बड़ा -सा मैदान खाली नजर आ रहा है उसके पास में मुझे एक पत्थर की बनी हुए एक घर नजर आ रहे है सामने की तरफ पिलर नजर आ रही है एक व्यक्ति भी नजर आ रहा --

इधर भी एक सफेद रंग की दीवाल नजर आ रही है दीवाल की ऊपर की तरफ ब्लैक कलर की एक जाली नजर आ रही सामने कि तरफ मुझे एक बोर्ड नजर आ रहा है बोर्ड के ऊपर हिन्दी मे कुछ लिखा--